डिबा मे भी मछली हे.

भाई इधर से रोड गया हां.

समान टी_बी वगैरह सब--

सामान को दिख रहा हे फुटबोल हे नीला पीला.

लाइट बत्ती दिख रहा हे.

हरा भरा पेड़ है। चारों तरफ फेस सीता से छाया हुआ है।

खड़े हैं अपने अपने सूपा लेके कपार पे।

और उधर दिवाल है दीवाल मे टाइल्स लगाया हुआ है दो खुड़सी है ब --

झंडा लगावेल है हरा भरा पेड़ दिख रहा है बिल्डिंग की खिड़की बहुत सारा दिख रही है.

खड़ा हो के ऐसे पकड़ी हुई है कपड़ा जूता पहनी हुई है मोजा पहनी हुई है।

हरा भडा पेड़ पौधा से भरल है.

हरा हरा हरा से वो सब् भरा हुआ है.

दिख रहा है पर्दा लगाया हुआ है उधर एल_सी_डी है पंखा लगाया हुआ है.

सर्विस सेंटर लिखा हुआ है दो आदमी ख-एक खड़े हैं गाड़ी पर बैठा हुआ है हेलमेट पहना है.

पर्दा हरा कलर से हे वो लगावल हे पर्दा और बेंच हे बेंच पे रजिस्टर रखा हुआ हे.

रोड़ है हरा भरा अगल बगल पेड़ पौधा दिख रहा है.

अंदर मे तार और बहुत हे ट्रांसफार्म का सब इधर से उधर बहुत तार लाइन बत्ती का बिजली बत्तीका सब आया हुआ हे.

अगल-बगल कुछ खड़ा है पेड़ पौधा दिख रहा है अंधेरा भी दिख रहा है नीचे.

आदमी का चेहरा ढाका है.

कुछ आदमी चल रहे हैं नाव भी चल रही हैं.

अंदर मे तार बत्ती बिछा बहुत हे ऊपर भी तार बिछावल हे चार बो बैटरी लटकावल हे.

बोंड्रि के बाहर नाली हे.

दुकान है दुकान में रिक्त रिक्त समान रखल है.

एक हॉल हे हॉल मे ढेरेसा खुर्सी लगाया हुआ हे.

तीन हरा हरा पर्दा गिराया हुआ है.

बांस से ये बना हुआ है रस्सी से सहायता के लिए नीचे गाड़ी दिख रहा है गाड़ी खड़ा है.

के लिए ईस्टेज कुर्सी लगाया हुआ है अगल-बगल बीच में बड़ा सा हरा हरा घास लगाया हुआ है सिढी बनाया हुआ है.

सोफा वाला कुर्सी लगा हुआ है कुछ आदमी बैठे हैं कुछ खड़े हैं।

हरा भरा पेड़ उर दिख रहा है लाइट बत्ती से स्जावल हैं.

छोटा बड़ा पेड़ भी हे बड़ा बड़ा चट्टान है.